यहाँ एक अ जू के अंदर अ हिरण है जिसमें जो --

इसमें बहोत ही अअअ दो ठो दो व्यक्ति इसके बाहर --

आयुष शू क्लब ए एथीन लिखल है लिखा हुआ है। यहाँ --

जमीन पर हरे रंग के कारपेट बिछे हुए हैं। पीछे में एक क्रॉस चिन्ह लगे हुए है।

यहाँ सामने एक केनरा बैंक है। केनरा बैंक के बाहर बहोत सारे बाइक लगी हुई हैं।

यह पोशाक अ ब अअअ अम अ बहोत ही सुंदर लग रही है।